पेड़ पौधे लगे हुए हैं और सामने ही कुछ घर भी दिखाई दे रहे हैं।

उसी के साथ एक बिल्डिंग बनी हुई है जो की बहोत ही बड़ी--

अह शीशे का टेबल लगा हुआ है जिसके अंदर बहुत सारे फोन रखे गए हैं।

ये एक होटल की तस्वीर है जहां पे सामने--

जो कि लेंटर के ऊपर बैठे हैं और कुछ लोग सीमेंट से।

जो की हरे रंग की छत है और साथ में ही कुछ --

जो की गमले लगे हुए हैं उसके साथ में ही गुरब्बारे भी लगे हुए हैं।

और उसके साथ एक काले रंग का गेट है जो की गेट के अंदर सीढ़ियां बनी हुई है।

ए कुछ लोग का साइकल चला रहे हैं और कुछ लोग--

यह एक झील के किनारे की तस्वीर है जो कि बहोत ही अच्छी लग रही है झील के किनारे की यह तस्वीर बहोत ही अच्छे तरीके से दिखाई गई है और साथ मे ही यह --

फोन का टॉवर है उसी के साथ कुछ लोग--

एक बंदा जोकि कुर्सी पर बैठा है उसी के साथ एक दरवाजा है दरवाजे के--

ये एक गाड़ियों का एक सर्विस स्टेशन है जहां पर गाड़ियों की सर्विस की जा रही है गाड़ियों की दोनों।

रेस्टोरेंट है जिसके बाहर एक ही रेस्टोरेंट है जो की बहुत --

कैंपर लगा हुआ है जोकि लाल रंग का कैंपर लगा हुआ है।